इसमें प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं छोटे बच्चे नीचे बैठे हैं खिड़कियाँ हैं ब्लैक बोर्ड है और पिंक कलर पर्प कलर का कोचिंग हुआ है इसमें ग्रीन कलर की दिवार --

इस चित्र मे रेड कलर सैंड है इसके ऊपर एक व्हाइट ब्लू रेड येल्लो कलर का पैकिंग के जैसा है ये--